पोस्ट ऑफिस के बगल में एक--

शटर लगी हुई है शटर के सामने कार खड़ी हुई है।

की तरफ बहुत सारे पेड़-पौधे हैं पेड़-पौधों के आसपास कंकरीली मिट्टी है।

रोड जस्ट नोट बिल्डिंग नेशन ।

यहां पर बीच में हवन कुंड की आकृति जैसी बनी हुई है।

पांच इमारत की आकृति बनी हुई है।